यहाँ किसी नेते का भाषण चल रहा है यहा भगवान की पूजा चल रही है यहाँ बहुत से लोग हैं ।

वो व्हाइट शर्ट पहने हुआ है और उसके जेब में मोबाईल है| यहाँ पर के फिल का डब्बा रखा हुआ--

एक तरफ भूसा निकल रहा है एक तरफ चावल निकल रहा है| यहाँ बहुत-सा आदमी है एक ट्रैक्टर है जिसका कलर ब्लू है|

और एक म सीढ़ी बनी हुई है लकड़ी की जिसपर एक आदमी मसाला लेकर चढ़ रहा है।

किसी फिल्म स्टार का घर है लगता है| यहाँ बहुत सी भीड़ लगी हुई है| घर का कलर ब्लैक व्हाइट एण्ड रेड है|

और यहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं स्केटिंग करते हैं और एक बच्चा जो जमीन पर बैठा हुआ है बरफ से खेल रहा है और यहाँ एक गेट के तरह बना हुआ है।

यहाँ किसी के यहाँ फंग्सन की पिच्चर है यहाँ एक डिज़ाइन डार बल्ब जल रहा है और यहाँ बहुत सुंदर आदमी जा रहे निकाल रहे है।

और एक आदमी जो दो आदमी एक बोरे को उठा रहे हैं।

जो की व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहने हुए हैं बगल में एक टेमपु लगा हुआ है|

लम्बे-लम्बे दिए गए है| यहाँ कुछ मिस्त्री है जो कि पिलर की ढलाई कर रहे हैं एक मिस्त्री जो गमछा बांधे हुआ है लाल टी-शर्ट पहने हुआ ह--

यह किसी मंदिर का लग रहा है ऊपर में दो शेर है| ये बतसर जिला सरकारी का है| यहाँ एक लेडिज है चश्मा पहने हुई है।

और एक लड़का चावल पे सोया हुआ है जिसका जींस ठौने पर फटा हुआ है ।

केरला होटल है यहा पर एक अ चिट्ठी बॉक्स रखा लिया है यहा पर एक वॉचमैन भी है और बगल मैं गेट के पास एक कूड़ादान है और एक स्कूटी लगा हुआ है। गेट के सामने एक बा--